एक काउंटर पर एक काफी बढ़िया गुलदस्ता रखा हुआ है।

और ये टेबल रखे गए हैं उसके पीछे दीवाल है।

अब इसके बाद लोहे के खादे की व्यवस्था की गई है जहां पर बैठके आराम से खा सकते है।

के पास बड़े बड़े झाड़ लगाए हुए है और बैठने की व्यवस्था की गई है लकड़ो पर --

बड़े बड़े झाड़ काफी सुंदर नजर आ रहे हैं।

तो कुछ लोग अपने धार्मिक गीत गा रहे हैं और उसके पीछे कुछ लोग हाथ बांध कर खड़े हुए --

कमरे में नारंगी रंग की आरामदायक सोफे और एक गोल काफी टेबल है जिस पर कुछ सजावटी सामान रखे हैं।

इसमें एक घड़ी के मीनार प्रमुख तार से दिखाई दे रही है।

सड़क पर ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिले चलती हुई नजर आ रही है।

इसके अंदर लाइट बल्ब और एल_ई_डी बल्ब और ट्यूबलाइट दिखाई जा रही है।

ये जो दृश्य है ये एक मिठाई की दुकान का है।

इसके दर्शन करने के लिए दो लोग सीढ़ियों से चढ़कर जा रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के पौधे गमले में लगाए गए है।

ये जो दृश्य है एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के अंदर का है।

ऑफिस के अंदर दो कुर्सी लगी हुई है और एक कुर्सी जो यहा के ऑफिस के बॉस है उनके लिए रखी --

ये दृश्य है या किसी नेता या पुलिस बड़े पुलिस ऑफिसर का नजर आ रहा है।

खूब शानदार लाइट से सजाया हुआ है।

दुकान के अंदर में एक कस्टमर भी नजर आ रहा --

दृश्य एक नए सलून की ओपनिंग का नज़र आ रहा है।

इसका शानदार इंटीरियर किया गया जैसे लाइट हो गया --

और ये जो पावर लगे हुए हैं जिससे गांव में पावर पहुंचती है और उसके बाहर एक झाड़ भी है और घास भी --

दृश्य है एक मच्छी बाजार का हैं जहां पर कुछ लोग अपनी मच्छियों को बेचते नजर आ रहे --

चर्च खड़े हुए हैं। जब चर्च को काफी शानदार फूलों से सजाया हुआ है।

यह गेट किसी फार्म हाउस या किसी होटल का नजर आ रहा है।

कुछ झाड़ लगाए हुए है बढ़िया से ग्रीनरी लगाई हुए है।

जैसे की चाय की दुकान है कुछ मसालो की दुकान है कुछ खाने की दुकान--

बहोत सारे लोग चलते हुए नज़र आ रहे है कुछ गाड़ियां भी रखी--

बाहर ये नीले झाड़ भी नजर आ रहे और हरी हरी घास --

इसके बाहर एक बेहतरीन सोफा रखा गया है।

जिसके एंट्रेंस पे एक भगवान का फोटो नजर आ रहा--

इसके पास से गाड़ियां गुजर रही है कुछ लोग फोन पर बात करते हुए करते हुए जा रहे।

कुर्सियों पर व्हाइट कपड़ो से काफी शानदार डेकोरेट किया गया है।

कलर का अच्छे अच्छे में का सोफा भी रखा हुआ है।